ये कोई सजावटी रूम और मंडप का इमेज जहाँ पर डेकोरेशन वाले इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाये है बहुत ही अच्छे तरीके से ये गुलाबी कलर मुझे बहुत ही भाए है जो की जहाँ पर दो लगाये गए है संदूक जिस पर बहुत सारे फूल भी लगे हुए है।